साइड में कुछ लाइट भी लगा हुआ है कुछ पेड़ भी लगा हुआ है।

एक खिड़की भी लगा हुआ है पीछे कुछ सामान भी रखा हुआ है।

इसमें कुछ पेड़ प लगे हुए हैं पीछे एक डैम बना हुआ है।

इसमें एक बाउंड्री दिखाई दे रही है एक दरवाजा खुला हुआ है।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

इसमें कुछ गिटार रखे हुए हैं कुछ हरमोनिया भी रखे हुए हैं।